सारे बच्चों ने आइडेंटीटी कार्ड और व्हाइट टी_शर्ट पहना है।

आदमी किसी ऊंचे स्थान पर खड़ा है।

सामने एक रूम दिख रहा है रूम में जिम के सामान रखा हुआ है।

सामने एक गार्डन दिख रहा है।

सामने एक मस्जिद दिख रही है। मस्जिद का कलर व्हाइट है।

ऊपर में करकट लगा हुआ है।

पुराने पुल लोहे का बना हुआ है।

भगवान की मूर्तियों पर मुकुट और फूलों से सजावट किया गया है।

सामने एक दुकान दिख रहा है दुकान के फर्श पर टाइल्स लगा हुआ है।

दुकान के रैको पर बहुत सारा समान डिब्बा में रखा है।

बगल में बहुत सारा बोर्ड टंगा हुआ है।

ऊपर में करकट भी लगा है।

सामने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है।

पीछे एक नारियल का पेड़ भी दिख रहा है।

इस रूम का कलर व्हाइट है।

दुकान के बाहर शिशा भी लगा है।

बिल्डिंग के छत पर भी कुछ आदमी दिख रहे हैं।

पीछे खेलने का समान और ड्रॉइंग भी किया हुआ है।

ऊपर में बहुत सारा समान डिब्बा मे रखा है।

नीचे एक फ्रिज है फ्रिज के ऊपर एक स्कैनर रखा हुआ है।

शोरूम का कलर क्रीम कलर है।

सामने एक आदमी खड़ा है जिसने ब्लू स्वेटर और ब्लू जींस पहना है।

ऊपर में भी लाइट और पंखे लगे हुए हैं।

छत पर दो तीन बोर्ड भी लगा है।

बगल में एक होटल भी दिख रहा है।

बगल में एक आदमी बैठा है उसने एक टोपी भी पहनी है।

लोहे का कलर येलो एंड ब्लैक है।

पीछे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

सामने कुछ सामान रखा हुआ दिख रहा है।